इसने अपने पैरो से जमीन में बुहत से निशाना बनाए हुए है यहां पत्थर भी है।

के नीचे वीवो कैमरा म्यूजिक्स लिखा हुआ है।

एक दीवार पे भारत का नक्शा भी उतर रहा है।

इसमें बैठने के लिए मेज टाइप सी की पे बना हुआ है और यहां पे एक बैग भी रखा हुआ है।

यह एक रूम है जिसमें सोफे रखे हुए हैं ब्लैक कलर के।

यह एक तस्वीर है जिसमें बहुत से मकान दिखाई दिए जा रहे हैं।

इस इस विद्यालय में बहोत से पेड़ पौधे लगे हुए है।

यह एक पिक्चर है जिसमें छत को बनाया जा रहा है इसमें बहुत से सरिए भी लगे हुए हैं।

और बराबर बोर्ड पर टी_वी_एस भी लिखा हुआ है और यहां पर एक विक्की भी खड़ी हुई है।

इसमें चार लोग एक औरत भी खड़ी हुई है। इसमें एक छतरी सी में लाइट भी जल रही है और इसमें बोहोत अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया गया है। इसमें एक फूल भी है।

एक दीवार पे डेनिम लिखा हुआ है।

यहां पे म्यूजिक बनाया जाता है यहां पर दो स्पीकर रखें हुए हैं मेज के उ --